एक तरफ सब्जी और एक तरफ फलों की दुकान दिखाई दे रही है ।

लाइनिंग दिखाई दे रहीं हैं ब्लू कलर का एक बोर्ड दिखा रहा है दो वाइट कलर के --

ऐसा लग रहा है तीनों सेल्फी ले रहें हैं अम कबड्डी मैट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं ।

इन मशीनो से अलग-अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं ।

ईमारत है इसके सा पास में केले का पेड़ भी दिखाई दे रहा --

इस इमेज में पत्थरों से बनी चट्टान दखाई गयी है जिसमे पत्थरों का आकार--

दिखाई दे रहा है काली लाइन --

इस इमेज में एक बिल्डिंग्स है बिल्डिंग्स में जो गैट दिखाया गया है।

ऊपर की तरफ रेड ग्रीन वाइट कलर में है।

इस इमेज में एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए --